बलूंस लगे हुए और व्हाइट --

दरवाजे भी है इस कमरे में ए_सी भी लगा हुआ है।

कल का कलर किया हुआ लग रहा है और उसके--

अलग अलग चीज बेच रहे है कोई मछली बेच रहा है कोई क्या बेच रहा है कोई मिर्ची बेच रहा है कोई आलू बेच रहा है।

एक बेड है और बेड बहोत ही बढ़िया है और इस पर बेडशीट एकदम व्हाइट कलर की लगी हुई है।

ये जो डेकोरेशन है बहोत ही बढ़िया हैडेकोरेशन --

ये व्यू किसी असेंबली हॉल का लग रहा है यहां पे बच्चे असेंबली हॉल में आएंगे या तो फिर ये व्यू की--

यहां से लोग कपड़े खरीदते हैं और ये लोकेशन अहमदाबाद में आई हुई है।

ये व्यू किसी गार्डन का लग रहा है जहां पे एक बच्चा अपनी मम्मी और पापा के साथ खेलने आया है और ऐसे बहोत सारे बच्चे आए हुए--

ये भी मुझे बहोत बड़ी जेल का लग रहा है दोस्तों।

ओ उसमें डोर है वो ब्लू कलर के हैं और पूरा--

ये बहोत सारे लोग चल रहे है और नारियल का पेड़ भी है।

और रेल जा रही है और ये रेलवे पे कोई--

ये अलग अलग चीजे अलग अलग जगह पे रखी हुई है और ये मॉल बहोत ही बड़ा लग रहा है।

यहां पे बहुत सारी बेंच है यहां पे बहुत यहां पे अंदर कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है यहां पे स्टूडेंट औ--

ऊपर व्हाइट कलर का एक फ्लोर दिख रहा है।

वर्कआउट कर रहा है उसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहेनी हुई है उसने ग्रीन कलर का लहंगा पहेना हुआ है।

नीचे फ्लोर में वाइट कलर का फ्लोर है यहां पे बहोत एक इंसान दिख रहा है जो ये सब बेच रहा है।

गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज का लग रहा है जहां पर गेट पर कोई गार्ड दिख नहीं रहा है और आसमान ब्लू कलर का--

इधर एक सोफा है जहां पे बेड बैग पड़ा है एक बंदा है जो पीले कलर की टी शर्ट पहनी है।

और यार जो बंदा बेच रहा उसने चेक्स की शर्ट पहनी है रेड कलर की और एक आंटी अंकल आए।

ये व्यू किसी पार्किंग का लग रहा है जहां पे ब अ लड़के व लड़की पार्किंग के लिए आए है और--

कुत्ता की मूर्ति लगी हुई है और यह एकदम बहुत सारे--

और यहां पे एक बीच में कुआं जैसा लग रहा है जहां से पानी नहीं आता।